कुछ तस्वीर वस्वीर लगा हुवा है और ये रेस्टोरेंट है और यहाँ पर एक लड़की और लड़का बेठा हुआ हैं और उधर भी कुछ लड़के एक लेडिज बेठी हुए है और ये लोग यहाँ खाना खाने के लिए आये हुए हैं।

देख सकते है ये लेडिज सब है और यहां पे इन्वाईट किया हुआ है शादी बिहा में आई होगी और यहाँ कारपेट बार्पेट बिछा हुआ है और बहुत सारे आदमी सब आए हुए हैं ।

यहां पे देख सकते हैं एक आदमी है जो की बोहोत ही जबरदस्त पोज़ आया है इसका डेनिम वगैरा पेहेने हुआ है चश्मा-वसमा पेहेने हुआ है।